इस फोटो में मुझे ऑटो और बाइक दिखाई दे रहीं है।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

इस फोटो में मुझे बेहती हुई नदी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में मुझे जगन्नाथ मंदिर दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे टी_वी दिखाई दे रही है।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

इस फोटो में मुझे बड़ा सा पोस्टर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे मुझे पेड दिखाई दे रहे है।